एक सफेद रंग-- का बना हुवा है एक डोरी दिख रही है जिसमे बच्चो के डाइपर दिखाई दे रहे है निचे दो स्टूल रखे हुवे है और एक--

दोनों लोग बाइक पे बाइक में खड़े है वो कर्मचारी उन वक्तियो से कुछ पूछते हुए दिखाए दे रहे है।

भारतीय डाक विभाग सूचना पट्ट दिखाई दे रहा है इस स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रेशन एवं पार्सल बुक होता है बरिस्ट डाक अधिक छक--

मैदान है मैदान में दो ड्रम रखे हुवे है सामने कुछ सीडिया बनी हुयी है बिच में एक रास्ता सा दिखाई दे रहा है एक बैठने की सीडिया बनी हुयी है।

एक पेड़ लगा हुआ है जिसकी कुछ डगाल सूखी हुई है जो सूखी डगाल है वे नीचे जाकर पानी से जुडी हुयी है कुछ मे हरी पत्तियां है।

एक रूम है रूम में बहुत सारी प्रोजेक्टर बच्चों कार्ड लगे हुए है।